एक व्यक्ति हमें खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमें पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। परदे दिखाई दे रहे हैं पीछे --

ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहे हैं।

ज़मीन दिख रही है और यहाँ पर पंखुड़ियाँ --

यहाँ सामने हमें एक व्हाइट कलर की एक बड़ी -सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बड़ा -सा पोस्टर --

यहाँ पर हमें एक घर दिखाई दे रहा है जहाँ पर ग्रीन ग्रीन घांस हमें यहाँ दिखाई दे रही है लाइटिंग --